पहाड़ पर से झरने के जैसे एक जोर में पानी गिर रही है यहाँ पे बहुत सारे आदमी घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे सभी नहा रहे हैं।

यह एक चर्च है यह चर्च बहुत बड़ी है इस चर्च में इसाईं धर्म के लोग चर्च में आते है और प्रार्थना करते है।

चर्च में मोमबत्ती भी जलाया जाता है इस चर्च को काफी सारे बेलून से सजाए गए हैं और बहोत सारे आदमी यहाँ पे आए हुए हैं।

ये एक होटल है यह होटल बहुत बड़ा है यह होटल में बहुत सारे आदमी इस होटल में आते है यह होटल को फंक्शन्स के लिए बुक करते है।

रोड साइड में एक स्कूल है ये स्कूल में बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आती है।

यह एक मैदान है यह मैदान में बहुत सारे आदमी इस मैदान में जोगिंग कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर जोगिंग करने के लिए आये हुए हैं काफी सारे आदमी जोगिंग करते हैं ।